जो की देखने में बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा --

और वह अपने काम को बड़े ही सरलता और कुशलता के साथ निभा रहें हैं।

ह एक प्यरा घर है जो की देखने में बड़ा ही अच्छा और आकर्षित लग रहा है।

यह एक नगर पंचायत है जोकि देखने में काफी अच्छा और सुंदर लग रहा है ।

जो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है।